यहाँ पे तीन-चार टैंकर आप देख सकते हैं।

यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे आखिरी वाला जो ट्रक है वो पीला कलर का है।

ये जिम है। जिम में लोग आ के कसरत करते हैं और अपना वेट कम करते हैं। जो म मोटापे से जो परेशान होते हैं वो अपना पेट कम करते हैं और जो --

पतलेपन से परेशान होते हैं वो अपना वेट बढ़ाते हैं।

सफ़ेद है। कुछ बाइक का कलर हरा है और मोटर आउ मोटर का भी कलर देख सकते हैं ये थोड़ा लाल है और थोड़ा काला है।

पीला है और जो उसका आगे का जो मुँह है उ तो काला है। आप देख सकते है ग्राउंड उम्म --

क्लिनिक है क्लिनिक कितना ही प्यारा लग रहा है। क्लिनिक आप देख सकते हैं क्लिनिक का जो --